यहां एक कमरा दिखाई दे रहा है।

यहां एक घर दिखाई दे रहा है।

घर के बाहर कुछ आदमी दिखाई दे रहा है।

यह एक बारन्दा दिखाई दे रहा है।

यहां एक पत्थर का गुफा दिखाई दे रहा है।

यहां एक पुराना किला दिखाई दे राहा है यह किला ईंटे से बना हुआ है।

यहां दो सफेद बुक्स दिखाई दे रहा है।

यहां एक बागान दिखाई दे रहा है।

यह मैदान के पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

रूम के बीच एक टेबल रखा हुआ है।

रूम के आगे एक टी_वी लगाया हुआ है।

बिल्डिंग पर बहुत सारा खिड़कियां दिखाई दे रहा है।

यह लकड़ी से बना पुतला दिखाई दे रहा है।

यहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

कमरे के सीलिंग पर ब्लू और पिंक लाइट्स लगा हुआ है।

यहां एक बड़ा नदी दिखाई दे रहा है।

रस्ता का साइड में थोड़ा ग्रास है।